इसके सामने गार्डन्स बने हैं गार्डन्स में पेड़ लगे हैं पेड़ का कलर --

यह एक झरना है झड़ने से पानी बेह रहा है उसमें--

यह एक पार्क है पार्क में वाटर फॉल बने हैं उसमें ब्लू कलर के हैं।

ग्रीन है उसमें एक मुर्गी है मुर्गी का कलर है ब्लू ।

एंड पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े पेड़ का कलर है ग्रीन और नीचे जमीन है ब्राउन कलर का --

पर में बादल छाए हुए हैं नीले कलर के।

येलो बहोत सारे हरे हरे पेड़ से हैं वहां दो औरतें खड़ी हुई हैं।

और आटा है बिस्किट का कलर ब्लू कलर का है।